जिसके नीचे दो लाइटे चल रही है लाइटों का रंग पीला है।

ट्रैकों के पीछे मशीने बांधी हुई है।

यहां पर दवार भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

क्रेनों के साइडो में बहुत सारे लोग खड़े है।

उन्होंने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

लाल नीला सफेद काला अंकल के बाल--

ये उसका रंग स्किन कलर का हैं।

डाली के ऊपर बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है वहां पर एक गुरुजी भी बैठे हैं।

यहां पर एक सोफा लगा हुआ है।

वह भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सुंदर एक स्टार बना हुआ है स्टार के साइड में पीला और संतरी रंग का वर्क किया हुआ है।

यहां पर एक छोटी सी नदी है।

यहां पर बहुत सुंदर डेकोरेशन की जा रही है।

जिसका नाम है प्यूमा यहां पर सभी प्रकार के कपड़े और बोट मिलते है।

वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

यह टायर बहुत ही बड़े हैं यहां पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।